ये घूमने का जगह है यहाँ अलग-अलग देश से लोग घूमने आते है यहाँ पे फुहारे मार अ चल रहा है पानी का यहाँ पे लोग घूम के अपना सब घर जाते है घूमने घूम कर और आते हैं।

ये एक होटल है देख ने से ऐसा लगता है की यहाँ से बाहर से लोग आते है यहाँ रेंट में रहते है किराये में र रहते है कुछ लोग बच्चे को पढ़ाने के कारण रहते है कुछ बहार से आए हुए लोग रहते हैं।

इसको देख ने से लग रहा है की ट्रेन अपने पटरी से जा रही है ट्रेन का खिड़की है उससे बहार देख सकते है बाहर का पूरा हरा भरा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है बहुत ऊंचा- ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।

गाँव से लोग अम बच्चे पढ़ने आते है और शहर से भी बच्चे पढ़ने आते है यहाँ अ हर सब्जेक्ट का अलग -अलग टीचर होते है और अपना-अपना सब्जेट टीचर पढ़ाते है और यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं।

यह एक गौतम बुद्ध का मंदिर है यहाँ लोग पूजा करने आते है देखने से ये बहोत अच्छा प्रतीत हो रहा है यह देखने से लग रहा है की पत्थर की बनावटी हैं।

ये काफी पुराना बिल्डिंग लग रहा है यहाँ पे जाने आने का रस्ता भी है यह सब भी दिखाई दे रहा हैं।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

लग नहीं रहा है कि यह नदी है लेकिन कम थोड़ा -थोड़ा पानी भरा बहुत सारे पत्थर है छोटे बड़े।

जैतापुर तुलसीपुर बलरामपुर लिखा हुआ है संस्थापक श्री ब्रीजभूषण सरण सिंह है और ये स्कूल बस काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे अभी खड़ी हुई हैं।

ये एक महिला है जो कि इसे देखने से लग रहा है की यह नृत्य कर रही है बहुत सजी -धजी हैं।